इस पिक में जो हम अ सीन देख रहे हैं यह किसी जिम का--

बहुत ही अत्याधुनिक किस्म की--

हम इसके साइनिंग बोर्ड पर पढ़ सकते हैं और इसके बाहर बहोत सारा मीट लटका हुआ है।

हम जो दृश्य देख रहे हैं--

एंट्री गेट को देख रहे हैं जोकि बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

जो हम दृश्य देख रहे हैं--

का होल्डिंग बोर्ड लगा हुआ भी हम देख रहे हैं ।

एक भवन की तस्वीर देख रहे है।

इस पिक में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह किसी--

हमारे मजदूर भाई अपने सुरक्षा--

आर_के ट्रेडर्स की दुकान का दृश्य है जो जहाँ पर हम सैनिटरी आइटम्स को--

इस तस्वीर में--

हम दृश्य देख रहे हैं बोहो--

सेंटर का दृश्य है जहाँ पर की एक मारुती--

इसकी दुकान में बहुत सारे मोबाइल और मोबाइल से संबंधित--

दो चट्टानों के बीच बह रहे एक सुंदर--

हम जो दृश्य देख रहे हैं--

जहाँ पर कि लोग किसी प्रतियोगिता--

जो यह लैंडस्केप का हम दृश्य देख रहे हैं बादलों से घिरा हुआ यह सुप्रसिद्ध--

इस तस्वीर में जो हम दृश्य देख रहे हैं।

स्वागत के लिए तैयार किए गए गेट का दृश्य है जिसमें कि बहुत ही--

हम जो दृश्य देख रहे हैं।

विद्यालय का दृश्य है जहाँ पर की--

सज्जित किया गया है और इन मोबाइल्स को शीशों की रैक पर सजाया गया है।

दंत चिकित्सा कैंप का दृश्य है।

छांव दार वृक्ष हम देख सकते हैं।

इस पिक में हम किसी इंस्टिट्यूट का दृश्य देख रहे हैं।

हमें एक मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें की राधा और कृष्ण की बहोत ही सुंदर मूर्तियां--

के समय में यह अस्पताल बना था लेकिन अब इसका जो नाम है आधुनिक समय में वह है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल --